और बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। एक बहुत बड़ा हाल है। यहां पर प्रोग्राम हो रहा है।

यहां चित्र दिखाई दे रहे हैं। यहां पर तालाब दिखाई दे रहा है हमें आसमान दिखाई दे --

जिम जाती होती हूं उन कपड़ों में --

ऑल डिमांड सेंटर लिखा हुआ है। ऐसा लिखा --

मशीनरी यहां पर मशीनरी मिलती है शॉप में।

नदी में पानी भरा हुआ है पानी अभी इसमें कम दिखाई दे रहा।

बहुत ही चौड़ी नदी है। यहाँ पे तट्टीय में नांव भी लगी हुई है यहाँ --

स्टेज पर कुछ गर्ल्स वगैरह बॉयज वगैरह खड़े हुए चेयर्स लगी चेयर्स पे व्हाइट कपड़ा बिछा हुआ है।

पेन -वगैरह रखे हुए हैं। जित्ते भी पढ़ने-लिखने संबंधित सामान हैं वो सभी रखे हुए हैं यहाँ पे ।

और कुछ शायद ग्रास लगे हुए हे घास लगी हुए है ।

ट्रेडमिल रखा हुआ मशीन रखी हुई साइकिल रखी हुई है।

यहां पे हमें दो आदमी दिखाई दे रहे हैं।

एक दुकान है उस पर ऊपर छत बना हुआ टिन का मंदिर भी है यहाँ पे दोनों बस खड़ी हुई है। बाइक वगैरह खड़ी हुई है।

का पूरा कलर छूट गया है।

यहां पर एक-दो पर्सन खड़े हुए बातें कर रहे हैं कागजात रखे हुए हाँथ में।

यहां ब्लू -ब्लू पर्पल पर्पल पिंक लाइट दिखाई दे रहें हैं यहाँ पे --

डी_जे वगैरह रखे हुए है।

यहां पे तेंदुआ या शेरद है जो खड़ा हुआ नीचे की तरफ देख रहा --

साबुन रखे हुए है। शैम्पू रखे हुए हैं। आल प्रोडक्ट होते हैं वो रखे हुए हैं।

खिड़कियां दिखाई दे रही अंदर पर्दे लगे हुए हैं अंदर लाइटिंग जल रहा है। एकदम --

लाइन से लगाए गए हैं एकदम बोहोत ही ज्यादा सुंदर दिख रहा है --

लिखा हुआ है ट्रैन्स्लैट विद्यालय करके लिखा हुआ है।

मैदान है उसमें ग्रीन ग्रासेज लगा हुआ बहोत ही बड़ा मैदान है यहां पे।

आसमान दिखाई दे रहा है। यहां से रोड दिखाई दे रही। बहोत ज्यादा उचाई से दिख रहा --

एण्ड यहां पर बहुत सारी गाड़ी वगैरह आए हैं। पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए आए हैं।

सामने से हाईवे गया हुआ है। साइड में और सब दुकान वगैरा भी हैं। आसमान एकदम नीला नीला दिख --

यहाँ सेल लगा हुआ है यहाँ ऑल टाइप की बहुत बड़ी दुकान दिख रही है।

सीढ़ी से चढ़ के ऊपर जाते हैं। हॉल बहोत बड़ा दिख रहा है।

यहां पे जिम की सभी मशीन दिखाई दे रही हैं हमें।

ऊपर एक गुम्मद जैसा दिखाई रहा है --

मंदिर है ये एक एकदम खुला हुआ है अभी--

बैंक अभी खुला हुआ है। यहां पे व्हाइट कलर में लिखा हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया । ब्लू कलर --

पुता हुआ है चैनल गेट बहोत ही बड़ा है। अभी चैनल गेट थोड़ा सा ही खुला है।

यहाँ पर कांच लगे हुए हैं हर मंज़िल में कांच लगे हुए --

जो कांच है इससे अंदर से बाहर का पूरा नजारा दिखता है। वो --

हाँ हमें बहोत बड़ी दुकान दिखाई दे रही है।

यहाँ पर कुछ पब्लिक दिखाई दे रही एक जैसा ड्रेस पहना हुआ--